यहाँ उपर आसमान है आसमान दो रंगो का दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ टब दिखाई दे रहे है।

दीवार के नीचे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है पेड़-पौधे काफी हारे दिखाई दे रहे है।

अक्की पाव वाले गड्डे दिखाई दे रहे है जिसमे एक लोहे का जाल बना हुआ है एक बाइक खड़ी हुई है और तीन लोग गड्डे को खोदते हुए दिखाई दे रहे है।

गाड़ी सफ़ेद कलर की है उसके बगल में डब्बा है बाल्टी है और एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

वहा पानी दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ काफी बड़े दिखाई दे रहे है।

अह रोड है जिसमे एक कार खड़ी हुई है। एक खम्बा लगा हुआ है। कार व्हाइट कलर की है। उसके टायर दिखाई दे रहे है और मी मिट्ठी दिखाई दे रही है।